इस फोटो मैं बोहोत बड़ा ग्राउंड है। ग्राउंड के सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है और उस ग्राउंड पर नयी बिल्डिंग का --

इस फोटो में एक हॉल है। जिसमें बहोत ही सुन्दर लाइट लगी हुई है और परदे लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक ग्राउंड हैं जिसमें झूला सर्कल जैसे खिलोने हैं।

बहोत सारे बच्चे हैं जो झूला-झूल रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो सर्कल से खेल रहे हैं और पूरे ग्राउंड मैं पेड़ लगे हुए हैं।

चार बच्चे हैं। तीन बच्चे फौजी के ड्रेस पहने हुए हैं और हाथ में झंडा लिए हैं। एक लड़की है जो परी के कपड़े पहने हुए है।

ग्राउंड में बहोत सारे हरियाली व पेड़ लगे हुए हैं। बिल्डिंग के सामने खम्बे लगे हुए जिनके ऊपर से तार निकला है।

इस फोटो मैं एक हॉल है। हॉल में बहोत सारे टेबिल रखी हैं। टेबल पर --

कुछ लोग हैं जो पत्थर पर खड़े हुए हैं और कुछ लोग हैं जो पत्थर पर चढ़ रहे हैं

हॉल मे बोहोत सारे टेबल कुर्सिया डली हुई हैं।